मैदान के अंदर तीन खिलाड़ी खड़े हुए हैं।

यह एक नृत्य के कमरे का --

सभी लोग पैरों के बल बैठे हुए हैं |

समुनदर के किनारे मिट्टी की सतह है।

जिसमें कार के सभी पुर्जियों को अलग-अलग किया गया है।

जो की आपस में मिलकर --